और काफी साफ सफाई नजर आ रही है।

इसकी टायर ब्लैक कलर में है।

रस्ते में जो हैं उसके किनारे किनारे बहुत सुंदर सुंदर फूल पौधे--

कलर के डब्बे नजर आ रहे हैं कुछ बल्बे भी नजर आ रहे हैं कुछ बड़ी-बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं कुछ रोलिंग मशीन नजर आ रहे हैं।

एक रस्ता है रस्ता में कुछ गाड़ियां चल रही हैं।

एक फल का दुकान है वहां पे काफी सारे फल रखा गया है।

ये एक चर्च है जहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हैं चर्च के स्टेज पर।

और ये बहोत सारी पेड़ों से घीरी हुई है काफी सारे जमीन में पत्ते भी गिरे हुए हैं ये हरा कलर का पेड़ नजर आ रहा है।

एंड नीचे पे भी लिखा गया जॉनसन ऑथराइज्ड डीलर बालाजी--

लड़कियां एक साइड और लड़के एक साइड बैठे हुए हैं।

यहां पे काफी सारे लोग जो है।